नीचे एक बाइक का हैंडल दिखाई दे रहा है एक ।

जैसा कि हम देख रहे हैं हम हम हमारे सामने बस स्टैंड है और बस स्टैंड पर बस खड़ी है।

और सामने कुछ गोल्ड रिंग रखी हुई हैं और बगल में एक आदमी की फोटो छपी हुई है।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं सामने गेट पर लिखा हुआ है प्रवेश निषेध है आम रास्ता नहीं है।